यह मीट मांस की दुकान नजर आ रही है।

ये मोबाइल का टावर है। इसमें कई लगता है टावर लगे हैं। इसकी ऊंचाई बहोत है खुला आसमान है ऐसा लग रहा है टावर छत पर लगा हो।

बहुत सुन्दर दृश्य है। पटरी भी दिखाई दे रही है।